यहां फूल भंडार है यहां फूल की मालाएं टंगी हुई हैं।

यह एक कपड़े की मंडी है जहां एक कार्टून --

ट्रैफिक किनारे कुछ छोटे छोटे घास दिख रहे हैं।